यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखने लायक है यह देखिए वहाँ ऐ_सी लगा हुआ है और सेलून बहुत अच्छा है। .

यहाँ नया टोटो है यह ओटो टोटो सभ चीज है देखिए नया है यहाँ एकदम ओपनिंग हुआ है।

यह देखिए पहाड़ है कितना बड़ा पहाड़ है पहाड़ है तो छोटा-मोटा नहीं है बहोत बड़ा पहाड़ है बहोत सुन्दर पहाड़ है।